आइ साइड बड़े- बड़े छोटे- छोटे झाड़ दिख रहे है एक आदमी दिख रहा है जिसने टोपा लगाया रेड कलर की जैकेट ब्लैक कलर की लोअर और शूज पहना एक एक बड़ा सा टावर दिख रहा है टा-और ऊपर साइड खुला आसमान भी दिख रहा है।

ये एक मेडिकल शॉप हैजो की ब्लू कलर जिसमे शट्टर है व्हाइट कलर संगिवनी मेडिकेज लिखा है अंदर सारी बहुत सारी मेडीशन रखी हैएक काउंटर दिख रहा है लाल कलर का एक छोटा स बोर्ड लगा हुआ है।

सामने एक ग्राउंड दिख रहा है जिसमे छोटी-छोटी सी घासे दिख रही है बड़े-बड़े हरे-हरे झाड़ दिख रहे है ऊपर साइड पूरा खुला हुआ आसमान दिख रहा है बिल्डिंग में कुछ खिड़किया दिख रही है कुछ चैनल गेट दिख रहे हैं।

आसमान दिख रहा है दो टो बड़ी-बड़ी बिल्डिंगे दिख रही है जिसमे वाइट वाली बिल्डिंग कुछ ज़्यादा बड़ी सामनेवाली से बड़ी दिख रही है उसमे बहुत सारी खिड़कियां दिख रही है।